जो की हम अभी खाली देख रहे हैं।

अपने से बड़े वाहन पे मूर्तियों के साथ खड़े हैं और कुछ लोग--

बहोत हरा भरा दिख रहा है हरियाली हमारे लिए बहोत ही अच्छी मानी जाती है।

पेड़ पौधे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहोत ही लाभदायक है।

जहां पे लड़के अपने साइज --

जैसा कि हम इस तस्वीर में देख पा रहे हैं।

यहां पे बच्चे के लिए लड़के हो या लड़कियां दोनों के लिए बहोत से प्रकार की कपड़े है।

यहां पे बहुत से लोग यात्रा करने में कही कहीं जगह घूमने जाते हैं।